यह एक सिल्ड हैं और तीन सिल्ड रखी हुई है जिनका कलर सफेद है| पीछे एक चद्दर लगी हुई है जिस पर ब्लैक कलर के कुछ स्टैचू बने हुए हैं ।

साइड मे कुछ मूर्तिया रखी हुई है जो मंदिर जैसे दिखाई दे रही है| नीचे रेड कलर की चटाई बिछी हुई है| पीछे की और दो चेयर लगी हुई हैं ।

सामने मिट्टी पड़ी हुई है मतलब कलर दिखाई दे रहा है| पीछे की और पेड़ लगे हुए है बहुत ।

कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है| हरियाली लगी हुई है एक मूर्ति दिखाई दे रही है | बीच में जो की बहुत हाईट की है बहुत ऊँची दिखाई दे रही है | कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है पीछे की साइड ।

यह एक रूम मै एक बेड लगा हुआ है यहाँ पर व्यक्ति के आराम करने के लिए बेड लगाए जाते हैं।

यहाँ पर बहुत सारी कार खड़ी हुई है| पीछे की और एक बहुत बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा हुआ है और स्ट्रीट लाइट लगे हुए दिखाई दे रहे है बहुत सारी कारे खड़ी हुई है।

यह एक झरना या नदी या तालाब हो सकता है| यह छोटा सा तालाब है लेकिन उसमे पानी बहुत भरा हुआ है पानी का कलर नीला दिखाई दे रहा है| चारो तरफ पत्थर दिखाई दे रहा है ऊपर से झरना भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ लगे हुए है हरियाली भी है।

चद्दर बिछी हुई है वो भी कपड़ो की है यह डिज़ाइनिंग की दुकान है शायद यह कपड़ो की एक दुकान हो सकती है यह सुंदर दिखाई दे--

बहुत सारे पेड़ लगे हैं| हरियाली बहुत अच्छी लगी हुई है| ऊपर की और खाली ब्लांक दिख रहा है।

यह सुंदर जगह दिखाई दे रही है| इसका कलर रेड दिखाई दे रहा है| पीछे की और भी कुछ एक व्यक्ति सा खड़ा हुआ दिखाई पड़--

एक ग्राउंड है यहाँ पर बच्चे वाकिंग कर रहे है टहल रहे है सबने अलग-अलग कलर के कपड़े पहने है सबने अलग-अलग कलर के जुत्ते पहने है सबने अलग-अलग के कैप पहने हुए है नीचे हरियाली है पीछे की ओर पेड़ है।